कुछ फल टंगे हुए हैं जैसे बनाना और कुछअलग-अलग करैटो में रखे हुए हैं बनाना येलो कलर के है।

यह एक मॉल दिख रहा है मॉल व्हाइट कलर का दिख रहा है यहाँ काउंटर में एक भगवान की मूर्ति दिख रही है।

अ फूल गोभी रखी हुई दिख रही है यहाँ साइड में टमाटर भी रखे हुए है।

सामने एक आसमानी चेयर रखी हुई है यहाँ पोस्टर मे बहोत सारे चाउमीन की फोटो दिख रही हैं।

येलो कलर की बिल्डिंग है बिल्डिंग में एक अंदर ब्लैक कलर का गेट भी दिख रहा है आस - पास बहुत सारे पेड़ दिख रहै हैं।

साइड में एक पर्पल कलर का मकान है ब्लैक कलर की शटर है बाइक खड़ी हुई है।

ग्रिल लगी हुई है आगे कुछ दूरी पर टावर दिख रहे हैं।

नीचे कुछ गिट्टीयाँ पढ़ी हुई है पानी का मौसम हैं।

हरे - हरे पेड़ दिख रहे हैं कुछ पानी के कारण ब्लैक दिख रहे हैं साइड में कुछ पत्थर भी है।

लाइटिंग में झूले में ग्रीन रेड सब प्रकार की लाइटिंग लगी हुई है।

चैनल गेट लगा हुआ है ब्लैक कलर ब्लैक गेट में ताला लगा है सामने मीटर और स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग में कुछ येलो कलर का पैंट भी किया गया है आस-पास बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

ब्लैक कलर के पत्थर में ऊपर पानी व्हाइट कलर का दिख रहा है और ऊपर बादल आसमानी कलर के दिख रहे है।

पीछे ब्लू ग्रीन वाइट कलर की लाइटिंग भी दिख रही है पीछे गोल्डन कलर की पट्टी लगी हुई है।

कुछ खम्बे भी दिख रहे हैं पीछे यहाँ छोटी हरी - हरी घास दिख रही है।

यहाँ बहुत सारे दुकाने दिख रही है दुकानों के सामने बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं एक पेड़ दिख रहा है।

एक ब्लैक कलर का स्टूल रखा हुआ है वाइट कलर का पिलर दिख रहा है ऊपर के गट्ठे में भी बहुत सारी साड़ियां बंधी हुई है।

यहाँ पे फ्लावर के गुलदस्ते भी लगाए लगे हैं सामने रेड और वाइट कलर के दिख रहै हैं।

यहाँ साइड में बहुत सारी कीबोर्ड की बटने दिख रही है।